यहाँ पर बहुत बड़ा गेट दिख रहा है और बाज़ू में एक रूम दिख रहे हैं और यहाँ बहुत बड़े झाड़ा दिख रहे हैं |

यहाँ पर फंक्शनल हॉल हैं और पीले रंग के फूल और सफ़ेद रंग के लाल रंग के फूल से डेकोरेशन करें हैं और यहाँ सफ़ेद रंग का सोफ़ा है और --

यहाँ पर एक गिलास के जैसा ऐनक के जैसा बनाये है और इसमें बहुत सारे बॉटल्स रखे है और तीन वाइट कलर के बॉक्स बॉटल्स दिख रहे है और यहाँ लाइट्स दिख रहे है।

कहां पर पार्क दिख रहा है और पार्क में पीसने के और ऊपर चढ़ने के दिख रहे हैं और पाइप के जैसे बनाए हुए हैं और लाल रंग का पिसलने का है यहां पर--

यहां पर रोड के ऊपर बस जा रही है |

यहाँ बस दिख रही है और यहां सफेद रंग की बस दिख रही है|

और यहां पर हरे रंग के झाड़ू उठे हैं और यहां पर सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं और यहां पर--